रूम की दीवार व्हाइट कलर की है।

पौधे लगे हैं। पौधे हरे कलर के हैं।

घर पे ग्रे और ब्राउन शेड डला है।

घर के सामने पेड़ लगा है।

इस इमेज में एक सड़क दिख रही है।

चट्टान ब्लैक और ग्रे कलर की है।

इस इमेज में एक लड़का बैठा है।

पहाड़ वाइट कलर के हैं।

इस इमेज में एक घर दिख रहा है।

इस इमेज में एक सड़क दिख रही है।